जैसा की आप लोग देख सकते हैं की ये कोई आई मिंग जंगल का पिक लग रहा है जहां पे बहुत सारी श्रब सब बुशेस ग्रासलैंड बहुत सारे हैं और यहाँ पे पत्थर वगैरा भी साइड में है पूरा केतना सुंदर लग रहा है देखिये तो अभी इसके अंदर बैठ के हम कुछ कर भी सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं क्यूंकि पूरा ऊपर तक है और बहुत ही --

वो रेड कलर का पेंट पहने हैं ऊपर टी अम सेंडो वगेरा पहने होगे और नीचे यहाँ ब्लू ब्लू है यहाँ पे बहुत सारे लाइट भी यहाँ पे जल रहे --